और ये किसी वाटर ब्रिज के आस-पास का इलाका है जहाॅं पे एक वाटर ब्रिज है और हाई टेंशन का बिल का खम्भा भी लगा हुआ है।

ये तस्वीर किसी बड़े पर्यटन स्थल की लगती है।